ओमे फूल पाती लगावल बा।

कुछ लोग

कई गो दुकान लउकत हिय गाडी उड़ी खड़ा बा| लोग आवत जात बाड़े काहे की रोडो बा किनारे एसे बुझाता की बाज़ार बा।

इतो गोरखपुर विश्वविद्यालय के --

विद्यालय हवे। यहाँ पढ़ाई होत बा।